यह एक मछली का दुकान दिखाया जा रहा है।

ये मंदिर मे बहुत आदमी यहां पुजा करने के लिए सुबह-शाम आते हैं।